यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एक--

यहाँ पर दो लोग खड़े हुए हैं एक कुर्सी-टेबल पड़ा हुआ है।

जहाँ पर बहुत सारी कार खड़ी हुई हैं।

और दूरी पर एक च-पानी का छोटा सा जार रखा हुआ है एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

और इधर-उधर भी एक लोग बैठा हुआ है ये देखिए--

और टीन के बाहर कुछ बड़ी इमारत बनी हुई है।

और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ एक फील्ड पड़ी हुई है जिसके--

यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ एक होटल है।

कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं अस्पताल है शायद देख पा रहे हो तो--

यहाँ पर देख पा रहे हैं लाइट लगी हुई है बहुत सारी जो जिससे --

यहाँ पर हम देख पाएंगे तो यहाँ पर एक फील्ड पड़ी हुई है।

यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह एक बेडरूम है।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

और इधर से कोई ना जा पाए इसके लिए भी जाली लगी हुई है मकान बना है तीन मंजिला।

गाड़ियाँ लगी हुई हैं छोटी-छोटी चार पहिया।

और जूते रखे हुए हैं बहुत सारा एक बॉल भी रखे हुए हैं।

खड़े हुए हैं जो पार्क साइड बना हुआ है एक वाच मैन खड़ा हुआ है।